यहां पर एक ब्लू कलर की बेंचे दिख रही है ग्रीन कलर के बेड दिख रहे हैं।

बाजू पिंक कलर की दीवार भी दिख रही है।

ऊपर एक फैन हैजो कि चालू दिख रहा है बहुत सारे पोस्टरें लगे हुए हैं।

एक एसी भी दिख रही है एक फैन है जो कि बंद है।

और एक छोटा सा कैमरा भी दिख रहा है एक लाल कलर का सोफा भी रखा हुआ है।

बहुत सारी किराने दुकान दिख रही है।

और एक काले कलर के टेबल भी रखे हुए हैं।

बहुत सारे ऑटो भी खड़े हुए हैं और एक वाइट कलर में कार भी रुकी हुई है।

चल रहे हैं ऊपर खुला आसमान है बहुत सारे--

और दो खिड़कियां भी जो कि चालू दिख रही है।

ये एक दिन का मंजर है यहां पर बहुत सारे प्रोटीन के डब्बे रखे हुए हैं।

और एक खिड़की भी दिख रही है जो कि चालू दिख रही है।

फूल का हार भी डाला हुआ है और नीचे कुछ आर्टिफिशियल फूल भी रखे हुए है।

एक छोटे से पिलर के ऊपर कुछ असली फूलें भी रखी हुई हैं बाजू में पीछे हिस्से में एक लाल कलर का एक बॉक्स रख--

ये एक दिन का मंजर दिख रहा यहां पर बहुत सारे फुगे लगे हुए हैं।

ऊपर बहुत सारी लाइटें भी चालू दिख रही है बहुत सारे फरारे भी लगाए गए हैं।

ए_सी का कलर वाइट है बाजू में दो बड़ी-बड़ी खिड़कियां भी दिख रही है साइड में एक पर्दा भी है।

यहां पर एक दिन का मंजर दिख रहा है ये एक बेडरूम दिख रहा है।

साइड में कुछ ट्रे भी रखा हुआ है उसके ऊपर चाय के कफ भी है।

ये एक दिन का मंजर दिख रहा है यहां पर एक कैनरा नाम का बैंक भी दिख रहा है।

और एक ब्लू कलर का बोर्ड भी लगाया हुआ है नीचे एक छोटा सा--

और नीचे बहुत सारी आर्टिफिशियल फूलें भी डाली गई है।

यहां पर एक बेडरूम दिख रहा है बेडरूम में एक वाइट कलर की पलंग भी रखी हुई है।

लाल कलर की चद्दर भी डाली हुई है और यह रात का मंजर दिख रहा है।

ये एक जे_सी_बी दिख रही है यहां पर दो लोग ठहरकर कुछ काम कर रहे हैं।

एक आदमी ठहरकर वाइट कलर का हेलमेट पहनकर खड़ा हुआ है।

पीछे बहुत सारे घरे दिख रहे हैं यह ऊपर खुला आसमान दिख रहा है और ये एक दिन का मंजर दिख रहा--

ऊपर खुला आसमान दिख रहा है बहुत सारे बड़े-बड़े भी पेड़ दिख रहे हैं।

और ये एक दिन का मंजर दिख रहा है और पीछे करंट के खंबे भी लगाए हुए हैं।

और एक पानी हाथ धोने का नल भी दिख रहा है ये रात का मंजर है।

यहां पर बहोत सारे छोटे छोटे झाड़ दिख रहे है यहां पर बहोत सारी कुर्सियां भी रखी हुई है।

यहां पर एक लड़का ठहरकर फोटो खींचा रहा है पीछे बहुत सारे लाल कलर के फुग्गे लगे हुए हैं।

और एक वाइट कलर में ए_सी भी रखी हुई है और छोटे-छोटे वाइट कलर के फैने भी लगी हुई हैं।

यह एक रात का मंजर दिख रहा है यहां पर बहोत सारे कुर्सियां रखी हुई हैं।

और कुछ छोटे-छोटे भी किसी नल भी दिख रहे हैं।

और बहुत सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई है पीछे हिस्से में बहुत बड़े-बड़े पेड़--

और एक लड़का कहीं पर जा रहा है और एक लड़का बैग पर लेकर खड़ा हुआ है।

यह एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिख रहा है यहां पर दो कुर्सियां रखी हुई है।

पीछे नीचे हिस्से में एक बड़ा सा सोफा भी रखा हुआ है।